इस चित्र में जैसा हम देख पा रहे हैं यहां पर बहोत सारे व्यक्ति योगा कर रहे हैं यह एक योगा क्लास है।

और सभी महिलाएं पुरुष योगा कर रहे हैं।

बिजली के बड़े बड़े तार है और हरी भरी झाड़िया।

इस चित्र में एक आदमी कुर्सी पर बैठा है।

बहुत सारी मिठाइयां रखी हैं और पकौड़े भी रखे हैं।

यह बहोत ही बड़ा आयुर्वैदिक सेंटर है।

इसके पास एक गाड़ी भी खड़ी है और पेड़ पौधे लगे हैं।

जिस पर बिजली के बहोत सारे तार लगे हैं।

इसके बाहर एक पायदान रखा है जो हरी हरी घास जैसा है--

यहां पर एक छोटी सी नहेर है जो बिल्कुल हरी भरी है।

इस चित्र में काफी बड़ा होटल नजर आ रहा है इस होटल में बहोत सारे टेबल है और कुर्सियां भी है।

मेरे सामने एक मंदिर है यह मंदिर काफी अच्छा है।